यह एक दर्जी की दुकान है जहां पर ढेर सारे कपड़े सर्ट पैंट --

और इसको यहां से वो कपड़े को अच्छे तरीके से बना पाते हैं बनाकर ड्रेस स्कूल ड्रेस --

हरे अन्य चीजें यहां पर रखी गई हैं जैसा आप देख ही सकते हैं यहां पर यह बहोत हर एक घरों में इस्तेमाल होने वाले चीज अब तो हो गए हैं।

पीछे बहोत ढेर सारा खुला मैदान है जैसा आप देख सकते हैं यहां गमला कितना अच्छा लग रहा है जैसे कि--

पिक्चर देखने के काम की आती है और यहां पर एल_जी टी_वी की कंपनी है यहां पर ढेर सारी एल_जी कंपनी के लिए रखी हुई है जैसा आप देख सकते हैं।

यहां पर तुलसी माता का पूजा किया जा रहा है यहां पर ढेर सारे फूल अगरबत्ती और अन्य चीजें भी रखी हुई हैं।

यहां पर एक ट्रक खड़ी है यहां पर बहोत सारे ट्रिक्स है जो सामान धोने के लिए काम आते हैं कुछ पुराने ट्रिक है कुछ नए भी हैं।

और एक अपनी ही अलग अलग रखे हैं और यहां पर--

पानी आ आदि चीजों को मिलाकर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है और फिर करके में दीवाल प्लस्तर छत में इस्तेमाल किया ज--

जो कि ईंटों से बना है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ों की टहनियों से बनाया गया है।

ये बहुत प्यारा लग रहा है इसके चारों तरफ बहुत हरियालियां हैं यहां पर अच्छे तरीके के पेड़ भी लगाए गए हैं।

ढेर सारे बीच में एक थोड़ा बड़ासा मूर्ति लगाया गया है।